और सब्जियां पास बुक भी दिखाई गई है।

यह फोटो बुक्स की है इसमें बहोत सारे बुक्स पड़ी है।

यहां पर वाटर पार्क बना है।

यह फोटो एस_बी_आई बैंक की दिख रही है इस फोटो में बहोत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं।

यह फोटो में एक बहुत ही अच्छा सा लॉन दिखाया गया है।

यह पार्लर के मोड़ पर हैं।

एक मैकेनिक है जो इसे सही करके देगा।